उसके अंदर शीशे लगे हुए हैं गेट के ऊपर।

ल रखा हुआ नजर आ रहा है।

लोग समान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग तरह के।

यह एक रोड का दृश्य है जहां पर रोड के पास में--